उसके सामने दो चार पहिया वाहन रखे हुए हैं।

और सड़क दिख रही है जिसके ऊपर दो पहिया वाहन खड़े हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और सड़क है | जिसपे कुछ दो पहिया वाहन --

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ इमारतें बनी हुई है और आसमान दिख रहा है आस पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ दो पहिया वाहन नज़र आ रहे हैं और धूप की तेज रोशनी नजर आ रही हैं |

इस तस्वीर मे ये नज़र आ रहा है कि ये एक कमरा है जिसमे कुछ टेबल और कुर्सिया रखी हुई है।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक कमरा है जिसमें कुछ टेबल और बहोत सारी कुर्सियां रखी हुईं हैं और खिड़कियाँ नज़र आ रहीं हैं और कुछ बक्से नज़र आ रहें हैं।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि एक इमारत बनी हुई है जिसके आस-पास पेड़-पोधे लगे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए उसे देख रहे हैं और कुछ तारे नजर आ रही है। आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में ये दिखायी दे रहा है कि एक मस्जिद है जिसके बाहर एक महिला खड़ी हुई है। आसमान दिख रहा है।

पंखे नजर आ रहे हैं और धूप की तेज रोशनी नजर आ रही है।